फिल्मील लग रही है जो पिक्चर काफी पुरानी दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग पर रेड कलर का पेंट बीच में--

व्हाइट ब्लैक और कुछ अलग मैदा के आइटम्स है।

एक साइड में डंडा रखा है।

यह कुछ बॉक्सेस दिखाई पड़ रहे हैं।

साइड में मंदिर दिखाई दे रहा है।

जिसके सामने टेबल पर काफी फाइलें रखी हुई है।

है जो किसी रिसेप्शन पर गए थे इसमें एक आदमी व तीन महिलाएं दिखाई दे रही हैं तीनों महिलाओं--

एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है जिसकी चोटी चोटी दिखाई पड़ रही है दो कुर्सियां दिखाई--

पढ़ रही है गूगल पे और फोन पे दे रखा है एक आदमी नजर आ रहा--

यह एक बाग की पिक्चर है जो किसी जू में है और बाहर से जाड़ रखा गया है।

कुछ स्कूटी ऑटो ई रिक्शा एंड कोड़ा वाहन दिखाई पड़ रहा है।

पीछे एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है लेडिस हुई दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई --